आप इस तस्वीर को देख सकते हैं यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर एक से ज्यादा अधिक लोग है।

आप इस तस्वीर में देख सकते है कि यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्टरी नज़र आ रही है पाइप की डिज़ाइन भी दिख रही है यहाँ पर लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम होता होगा।

आप इस तस्वीर मे देख सकते हैं की यहाँ पर शिव जी की मूर्ति रखी हुई है शिव जी की नीचे यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हाथी और हाथी बने हुए हैं जो की देखने में बहुत अच्छी--